और इहां पर एक खंबा है जिसके ऊपर बहोत लम्बी लाइन घीचि हुई है और यहाँ बहुत सारे पेड़ हैं।

और यहाँ पर कुछ बच्चे खड़े हैं कुछ आदमी खड़े है जो दिख रहे हैं मज़्जीद।

अदभुत तरीके का और यहाँ पर बोहोत सारी मूर्ति खड़ी हैं पीछे।

ब्लैक क्लर की और यहाँ पर बहुत सारे पौधे हैं घांस है भी है यहाँ पर।

ज्योतिस में एक आदमी को कुछ बता रहा है और यहाँ पर बोहोत सारी किताबे रखी हुई हैं।

यहाँ पर कुछ बच्चे हैं।

इसमें वर्कर काम करते हैं और यहाँ पर लोहे की है लोई --

यहाँ पर बोहोत सारे गमले लगे हुए हैं रोड के ऊपर जोकि किसी में पेड़-पौधे लग रहे हैं और यहाँ पर एक बोर्ड चमक रहा है आईसीआईसी बैंक का।